इसमें बहुत सारे बल्ब भी लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर में एक कमरा दिखाया जा रहा है जहां बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

हमें इस त चित्र में एक दुकान दिखाया जा रहा है जहां बहुत सारे झूले लगे हुए हैं।

दुकान के पास एक महिला खड़ी है जो कि हाथ में कुछ ली हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक कक्षा दिखाया जा रहा है जहां बहुत सारे बच्चे कुछ चित्र कला कर रहे हैं।

इमारत के ऊपर बहुत सारी लत्तियां चुकी हैं।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

डैम में पानी है जिसके बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया जा रहा है जो कि एच_पी का है।

ये पेट्रोल पंप का रंग उजला है।

जहां कुछ गाड़ियां लगी हुई है।

स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

हमें इस तस्वीर में एक कक्ष दिखाया जा रहा है जो कि एक्सरसाइज का है।

और एक लड़का जो कि काला कलर का टी-शर्ट और काला कलर का पैंट पहना हुआ है वो एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में एक मैदान दिखाया जा रहा है।

वहीं एक लड़की उजला टी-शर्ट और काला पैंट पहनी दिखाई दे रही है।

जिसमें बहुत सारे बस लगे हुए हैं।

मैदान में झूले भी लगे हुए हैं।

मैदान के पास ही में एक बड़ा सा इमारत दिखाया जा रहा है।

इमारत के नीचे एक कार लगा हुआ है जिसका रंग की सफेद है।

कार में पीछे लाल रंग का लाइट --

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिखाया जा रहा है।

जिसमें कुछ झूले लगे हुए हैं।

हमें इस तस्वीर में एक बड़ी इमारत दिखाई जा रही है।

हमें इस तस्वीर में सूर्य उदय का दृश्य दिखाया जा रहा है।

जिसमें एक लड़का जो कि काला रंग का शर्ट पहना है वह नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में एक मंच दिखाया जा रहा है।

मंच के नीचे बहुत सारे फूल के पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुर्सी का रंग सफेद है जिसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा है।

जो कि बहुत सुंदर है वहीं नदी के किनारे कुछ सीरियां हैं उसके बाद एक प्यारा सा मंदिर नजर आ रहा है।

मंदिर के पास ही एक बड़ा सा वृक्ष भी है।

मैदान में बहोत सारे घास लगे हुए हैं।

मैदान के बगल में एक बड़ा सा पेड़ भी है जो कि बहोत ही सुंदर है।

हमें इस तस्वीर में एक कमरा दिखाया जा रहा है।

कुर्सी का रंग पीला और टेबल का रंग काला है।

ट्रेन के ऊपर एक तार लगी हुई है जिसमें कि बिजली नजर आ रही है।

जिसके नीचे एक लड़का बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।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

जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है।

जो कि देखने में बहुत ही प्यारा है।

मंदिर के गेट पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है।

वहीं दुकान के बाहर कुछ गाड़ियां लगी हुई है जिसका रंग काला है।

हमें इस तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रही है।

कमरे में बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

गार्डन के बगल में एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

जिस पे लगे बल्ब बहुत ही सुंदर रोशनी दे रहा है।

वहीं इमारत के बाहर बहुत सारे पेर दिखाई दे रहे हैं।

हमे इस तस्वीर में एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

हमें इस तस्वीर में बहुत सारे फूल के माले दिखाई दे रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ एक पीला फूल भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

जिसमें कि बहुत सारे खाने की सामान रखे हुए हैं।

दुकान में लगी बल्फ जो कि बहुत अच्छी रोशनी प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है।